इधर थोड़े लोग बेंच पर बैठ के है. एकला व्हाइट कलर ड्रेस डालके और एक

एक फॅन दिख रहा है इधर और कर्टेन भी दिख रहा है इसमे एक लगा के--

काही की दिख रहा है उसमे पन्ने की और से और एकला चाटको कट कर रहा है।

तो शूजा हाथ मे लगाते है और इसके पीछे करपेटा है।

येल्लो कलर टी शर्ट लागे है। और एकला रेड कलर कैप डाल रखी है।

एक बैंक मे थोड़े लोग है। इधर--

इधर बिल्डिंग का काम कर रहा है। इधर लोग तीन लोग है इधर--

इधर एक बोर्ड लिखके इ सके ऊपर इलेक्ट्रिक बिक्री लिखकर यहाँ पे सुपर डी ए एक्स बोलकर और इसके बाहर बलून से डेकोरेट करके तीन शटर आ भी इधर।